यह एक गार्डन है इस गार्डन में मुझे एक औरत दिख रही है।

यह एक गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है।

यह एक श्री राजवर्षी बुक लिंक्स है।

दो टासफरर्म दिख रहे हैं। कुछ खंभे दिख रहे हैं।

मीटर की साइड में दो एम सी दिख रही है।

एक डस्टबिन भी रखा है और कुछ डिश भी दिख रही है।

यह एक कार रिपेयरिंग शॉप है।

इसमें मुझे एक कार दिख रही है।

और एक पीछे दिख रही है इस कार का पहिया खुला हुआ है।

जिसके नीचे एक सुरंग है।

जिसमें एक व्यक्ति जा रहा है।

यह एक यीशु मसीह का स्थान है।

यह एक लकड़ी का काउंटर है।

एक ब्लैक कुर्सी है और एक मोटर भी दिख रही है।

जिसके अंदर कुछ लाइटे जल रही है।

किसी पर हैप्पी लिखा हुआ है। किसी पर हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है।

यह एक लकड़ी का बहुत बड़ा काउंटर दिख रहा है।

कुछ ब्लैक कलर के हैं कुछ येलो कलर के हैं।

पीछे एक रेड कलर की मशीन है।

और एक पास में शीशा दिख रहा है।

इस मंदिर में मुझे कुछ व्यक्ति दिख रही है।

चोरथे जो कि बैठे हुए है।

इस शॉप के अंदर अलग अलग रंग के जूते दिख रहे हैं।

कुछ खेल रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।